ई एगो घर के जैसे लागत ता। ई घर पे केटरैन छावल बा।

इ सेलून ह सेलून के बाहर एक जने खड़ा बान। के अन्दर एक जना क बाल कटा त।

दो तीन लोग सेलून के अन्दर भी बइठल बानल लोग। सेलून के गेट पर बोहोत पोस्टर लागल बा। सेलून के बाहर भी कुर्सी पर बइठ --

उनके इधर बहुत मेहरारू और मरद बइठल बारे लोग| पंखा चलत ता| खिड़की दिखत ता।